यह एक ट्रेक्टर का फोटो दिखाया गया है।

कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई भी होते हैं । कॉलेज मे कॉम्पिटीशन लेवल तक की तैयारी करवाया जाता है।

बहुत सारे लोग फुल खरीदने के लिए जाते हैं यहाँ पे हर प्रकार के फुल मिलते हैं कमल फुल गेंदा फुल चमेली फुल और भी बहुत --

यहाँ पे बहोत ही बढ़िया पेट्रोल डीजल --